और कुछ रखा हुआ है बोर्ड घर में--- ]

यहाँ से जो देख रहा हुं छोटा - छोटा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है लेकिन पांच मंजिल तीन मंजिल का बिल्डिंग है।